पेड़े लगे हुए देखाई रहे हैं हमको चार-पांच --

स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान गांधीजी दो अक्टूबर जन दो हजार दो।

यहां पर चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है।

यहाँ पर फूलों की माला सजी हुई तिलक लगी --

एक गड लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीले कलर का।

यहां पर हमलोगो को हरे कलर की देवाल दिखाई दे रही है।